और सुरज भगवान का प्रकाश भी आ रहा है इधर नीचे इधर एक घर भी है अ बगल में कार भी दिख रहा है।

एक रिक्शा वाले भैया खड़े हैं वो हाथ में लिए हैं।

कुछ टेंपो भी जा रहे है बाजार में भीड़ बहुत दिख रही है।

कुछ बच्चे बैटिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे कैचिंग कर रहे हैं और पीछे बहुत सारा पेड़ है और नीचे गार्डन भी है।

और बहोत सारा प्लाई रखा गया है।

एक ऊपर टॉप के ऊपर एक आदमी बैठा है।